ईट पत्थर और सीमेंट के बने हुए मलवे को--

यह जमतारा डिस्ट्रिक्ट मे स्थित एक किराना दुकान है।

सुन्दर और सुप्रसिद्ध सिनेमा घर है।

यह इंग्लिश और हिन्दी दोनों माध्यम मे--

बाघ चीता इन सबको देखने को मिलता है।

पपीता आदि जैसे फलों को देखने को व खरीदने को मौका मिलता है|

यहाँ जामताड़ा जंक्शन कि तस्वीर हैशाम के वक्त यहाँ --

वह यहा से काफी अलग अलग जगह जाने वाली विमान कि--

यहा पर पेड़ कि च पेड़ कि चमक --